तसवीर किसी समारोह की तस्वीर है जिसमें संगीत की पेशकस की जा रही है इसमें एक व्यक्ति अपने मुंह से बासुरी बजा रहा है और दूसरा व्यक्ति तबला बजा रहा है।

लोग यहाँं पे घुमने के लिए जाते हैं अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ। यहाँं बहोत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं।

ये एक पार्क की तस्वीर है । लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं और टहलने के लिए जाते हैं बच्चे यहां खेलने के लिए जाते हैं ।बच्चों के लिए झूला --

यह एक पहाड़ की तस्वीर है लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं यहाँ पे --

यहाँ पे तरह-तरह के फल मिल रहे हैं जैसे सेब संतरा पपीता केला।

बच्चे यहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक होते हैं।

इससे बच्चों की रचनात्मक शैली का विकास होता है बच्चे यहाँ पे पढ़ने जाते हैं।

बच्चे अपना प्रतियोगिता परीक्षा निकालते हैं यहां की टीचर उनकी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने के लिए उनकी पढ़ाई में सहायता करते हैं।